ये बहुत अच्छी सजावट की गई है ये बहुत महँगी सजावट है इसका --

यह मंदिर है।

यहाँ हाल फिलहाल ही घर बनना स्टार्ट हुआ है।

कलकत्ता में बहुत अच्छी साड़ी इसकी तैयारियाँ की जाती है यहाँ बहुत दूर-दूर से --